यह एक मोर है जो रोड पर खड़ी है रोड के आगे एक आदमी चलते हुए दिख रहे--

बहुत सारे मछली है वाइट कलर के है और येलो कलर के डिब्बे में भी मछली रखे हुए है एक आदमी भी वहां पर बैठे हुए है टूल पर।

है इसके बगल में एक बिजली का पोल है जिसमें तार खींचा हुआ है और इस मकान के बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह एक दुकान है आशीर्वाद भोजनालय का--

डॉक्टर एस पी सिन्हा

कुछ शैंपू रखे हुए हैं और बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

इस मकान के ऊपर एक घड़ी लगाया हुआ है।

इसके किनारे तीन आदमी दिख रहे हैं और एक पानी टंकी भी है और पानी के किनारे एक पोल भी गड़ा हुआ --

उसके ऊपर लिखा हुआ है मार्केट शंकर मार्केट शंकर बोरवेल और इसमें इसके बाहर एक टंकी भी है और दो टूल भी हैं।

यह एक कॉफी का दुकान है इस कॉफी दुकान का नाम कोटहास काफी है--

इस दुकान में बहुत सारे डब्बे में कपड़े रखे हुए हैं कुछ कपड़े टंगे हुए हैं कुछ शीशे के अंदर रेक पर रखे हुए हैं और कुछ आगे बिखरे हुए हैं।

यह भी है जो ब्लैक कलर का है और इस मकान में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

और पैर भी रंगे हुए हैं महिला के कुछ दूरी में एक कुर्सी भी रखे हुए हैं और बैलून से सजाये हुए हैं इनके पीछे टेबल भी है।

यह एक बहुत बड़ा हाल है इसमें दो आदमी बैठे हैं और एक आदमी खड़ा है।

पोल में लिखा हुआ है दो प्लेटफार्म नंबर टू लिखा हुआ है इसके सामने कुछ बैठने वाले पुल भी बनाए हुए हैं।

उनके सामने बहुत सारे आदमी चल रहे हैं।

यहां पर लिखा हुआ है स्वराज जनरेटर स्वराज जनरेटर इसके बाहर कुछ बाइक लगे हुए है कुछ आदमी हैं।